कोलगेट है बहोत ही अच्छा उं डेकोरेशन है। बहोत अच्छा ख़ूबसूरत सामान बिक रहा है। सब कुछ बिक रहा है।

यहाँ पर बस अड्डा है जिसको बस अड्डा बोलते हैं। यह बहोत ही जहाँ पर सवारियां बैठती हैं। बस खड़ीं हैं।

यह कहीं की पहाड़ी है। बहोत खुबसूरत है। यहाँ पर एक बॉय है। खड़ा है जो ये पानी पी रहा है।

बच्चो की उ जहाँ पर बच्चो की पेंसिले बिकती हैं कॉपीयाँ बिकती हैं किताब बिकती हैं साबुन भी रखा है।